यह तस्वीर गाड़ियों के शोरूम की दर्शाई गई है जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं यहां पर--

जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं यह एक लाइब्रेरी की तस्वीर है यह पुस्तकालय की तस्वीर है यहां पर--

जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं यहां पर वर वधु ने--